यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा--

टो में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे एक नदी दिखा--

फोटो में मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक जिम दिखाई दे रहेया है।

फोटो में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

फोटो में मुझे कुछ पेड़ दिख--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

इस फोटो में मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।